दो-चार लेडीज यात्री भी --

यह गाडी फोर-व्हीलर गाड़ी है इस --

यह एक मैदान है यह मैदान काफी बड़ी -